ब्लू कलर के पर्दे लगे हुएं हैं और दो अंकल बैठे हुए हैं।

बाजू में ही कुछ टेबल और कुर्सियां रखी हुई है जिनका कलर काला पुता हुआ है।

गाड़ियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बहुत--

हुई है कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं स्कूल --

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है कुछ दुकानें भी नज़र आ रही है।